इस तस्वीर में हमें एक घर दिखाई दे रहा है।

इस घर के आचपास हमें वृक्ष भी बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह दृश्य हमें किसी गांव का दिखाया जा रहा है।

इस दृश्य में हमें एक बिल्डिंग नजर आ रही हैं।

इसमें एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर--

यह दृश्य हमें किसी कैफे या होटल का दिखाया जा रहा हैं।

टिंट बहुत ही सुंदर फूलों से सजा हुआ है।

इसमें बहोत ही लाइटें और गुलाबी रंग का टेंट लगा हुआ हमें दिख रहा हैं।

ये दृश्य में एक क्लॉथ शॉप है।

इसमें बहुत ही सारे कपड़े जो कि अलग अलग रंग के हमें टंगे हुए दिखाई दे रही हैं।

यह दृश्य शायद हमें किसी ऑफिस या कंप्यूटर लैब का दिखाया जा रहा है।

इसमें दीवारों का रंग सफेद है।

बहोत सारे पशु बंधे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं।

इसके बाहर एक आदमी खड़ा होकर अपनी फोटो खिंचवा रहा है।

यह दृश्य हमें किसी पेट्रोल पंप का--

घर को सफेद रंग से कलर किया गया है।